होटल टाइप का दिख रहा है जिसमें बहुत सारी चेयर टेबल रखे हुए टेबल --

लाइटिंग का काम है विंडो है डोर्स --

एक बैंक दिख रहा है जिसके बाहर पे बोर्ड लगा हुआ है बंधन बैंक ।

कुछ बाइक खड़े हैं एक लड़का बाइक को घुमा रा--

बहुत सारे पेड़ पौधे हैं साइड में दो बड़े बड़े पिलर्स भी लगाए गए हैं।

एक बैठने का जगह टाइप का भी है।

एक दुकान टाइप का दिख रहा है जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है डी_एस_जी एंटरप्राइज .

बहोत सारे लड़के कुछ चेयर पर बैठे हुए हैं।

एक ग्राउंड टाइप का दिख रहा है जिसमें बहुत छोटे-छोटे घास है बड़ा-बड़ा पेड़ है पौधा है।

यहां दो एक बच्ची और एक लेडिस बैठा हुआ है एक लड़का जा रहा है।

बैठा हुआ दो तीन कार है वाइट कलर --

आ लोहा का कुछ बना करके रखा ग--

दराज टाइप का है जिसमें बहुत सा--

एक पोल दिख रहा है पोल पे लाइट टावर --

छोटे-छोटे हरे-हरे पौधे हैं छोटे-छोटे घास है कंकड़ पत्थर है।

मार्बल का काम है ऊपर सीलिंग फैन है एल_ई_डी लाइट है।

बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं एक पोस्टर टाइप का गिरा हुआ है एक कालीन बिछा हुआ है जिसमें जूता है कपड़ा है।

ऑफिस टाइप्स का दिख रहा है जिसमें बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

संतरा है अनार है केला लटके हुए हैं सीढ़ी पर एक और बास का दुकान टाइप है जिस पर एक आदमी है।

रिक्शा लिए जा रहा है एक और आदमी है छाता--

और भी एल_ई_डी लाइट पोल पर लगाए गए हैं जो जल रहे हैं।

बड़े बड़े चट्टानें छोटे मोटे पत्थर है पेड़ पौधे हैं मट्टी--

नीचे मार्बल का काम है कुर्सी।

अ अ कचरा टाइप्स का जमा हुआ टेबल है एक--

अ स्कूटी है हाफ दिख रहा है स्कूटी ।